इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बस नजर आ रहा है।

ये तस्वीर घर के अंदर का है इस तस्वीर में बहुत सारे सोफा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे ग्लास का टेबल भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पत्थर भी नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे दुकान भी नजर आ रहा है।

घर का छत टीना का बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे काले अंगूर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सोलर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे घर नजर आ रहा है।

आदमी ने शर्ट पहना हुआ है आदमी के हाथ में हेलमेट भी है।

इस तस्वीर में मुझे झंडा भी नजर आ रहा है।

एक तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर का नजारा है।

तस्वीर मुझे आदमी भी नजर आ रहा है फ्लोर टाइल्स का बना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे खाने पीने के आइटम भी नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बेंच नजर आ रहा है।